जिसमें बहोत से बैलून लगे उस छत और दीवारों पे लगे हुए हैं।

जिसने एक हाथों में घड़ी और दूसरे हाथों में बहुत सारी अंगूठियाँ पेहन रखी हैं।

जिसके आस-पास अ छोटे-छोटे घास उग रहे है।

जहा पे मिक्की माउस अ जैसा --

इसके आस-पास बोहोत से पेड़ है। छोटे-छोटे हरे घास है।